बीच में एक पिलर है इसमें पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां बगल में लाल कलर का एक पत्ता भी है।

बगल में बहुत बड़ा पेड़ है।

बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है।

कॉफी भी रखा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें डायनोमिस्टिक एंड मैगेनेनीग़ सेंटर लिखा हुआ है।

दोनों डॉक्टर हाथ में सफेद कलर का ग्लव्स पहना हुआ है।

यहां एक आदमी काला कलर का जैकेट पहना हुआ है नीचे--

ठेला भी है जो नीचे खड़ा है।

इसके ऊपर में एक पानी का बोतल है।

यह बहुत बड़ा कमरा है।

यहां एक टेबुल है बगल में बहुत सारा कुर्सी है।

अंदर में अलमारी भी बहुत सारा रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा जींस और शर्ट टी शर्ट भी रखा हुआ है।

सारा कपड़ा टंगा हुआ भी है।

दो आदमी हाथ में अगरबत्ती लिया हुआ है वह गमछी पहना हुआ है।

यहां एक सीढ़ी लगाया हुआ है।

यहां रंग बिरंगा लाइट लगा हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक दुकान है ऊपर में ओइंडा का बोर्ड लगा हुआ है जो लाल कलर का है।

बहुत सारा पंखा भी है जो सफेद कलर का है।

बगल में एक सोफा है।

यहां बहुत सारा सजावट किया गया है यह रॉयल पैलेस है।

यहां बहोत सारा सजावट किया हुआ है ऊपर में रंग बिरंगा फूल लगाया हुआ है।

यह ब्लू सिंह टोन का बहुत बड़ा बोर्ड है।

इस गुलदस्ता में पीला कलर का फूल है।

यहां बगल में बहुत सारा फुल लगा हुआ है बहुत सारा पौधा भी लगा हुआ है।

ऊपर से बहुत सारा रंग बिरंगा पत्ता गिर रहा है बहुत सारा लाइटिंग लगा हुआ जो रंग बिरंगा है।

यह बहुत बड़ा हॉल है।

नीचे काला कलर का सोफा है।

वहां एक सोफा रखा हुआ है उसके पीछे बहुत सारा डेकोरेट किया हुआ है।

रंगबिरंगा लाइट लगा हुआ है।

यहां नीचे बहुत सारा पौधा लगाया हुआ है ये बहुत हरा भरा है।

वहां एक घर के बाहर में कचरा का डिब्बा लगा हुआ है।

बगल में दो तीन आदमी खड़ा है।